झाड़ के नीचे जो पूरा कम्पाउंड है।

यह हम देख सकते है एक यहाँ ग्रीन कलर का नीचे कारपेट पड़ा हैं।

हम सामने देख सकते है। व्हाइट कलर की दीवारे है।

सिल्वर कलर हम सोफा देख सकते हैं।

उसके पीछे लाल कलर के डिजाइन बनी हुई है।

दो आइनों के आगे दो ब्राउन कलर की चेयरस पड़ी हैं।

आगे ही एक वाइट कलर का काउंटर भी बनाया गया है।

पीछे एक गेट बनी है।

एक डिज़ाइन वाला गेट है।

पीछे पत्थरों का एक पहाड़ टाइप बना है।

उसी के बाजु एक बिल्डिंग है येलो कलर की।

बिल्डिंग पूरी लाइटों से सजाई गयी है।

सामने एक ए.सी है दीवार पर।

बहोत पानी है दूर-दूर तक।

झाड़ पे बहोत सारे पत्ते हैं।

ये इमारत बन रही है।

सामने एक बाइक खड़ी है लाल और काले कलर की।

ऊपर छोटी-छोटी लाइटे लगाई गई हैं।

इमारत बनाई जा रही है।

नाव के ऊपर एक आदमी और एक औरत खड़ी है।